यहाँ पे एक स्टेशन बना हुआ है बस स्टैंड । यहाँ पे बहोत सारी चेयर रखी हुई है जो कि कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पे एक स्कूल है यहाँ पे अ एक हॉल है हॉल में बहुत सारी गल्स है जो --

बहोत बड़ा हॉल है। उसमे ना ऐसे बहोत सारी विंडोज़ बनी हुई हैं। यहाँ पे बहोत सारी टेबल रखी हुई हैं। बेंच अ टेबल लगी हुई हैं। बहोत सारे लड़के हैं यहाँ पे।

ओ गेट यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं आसमान दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अ कुछ घर बने हुए है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए --

यहाँ पे कुछ छोटे पेड़ हैं। कुछ यहाँ पे बड़े पेड़ लगे हुए हैं। जो कि ब्लैक पन्नी में अ लगे हुए हैं। पन्नियां दिखाई दे रही हैं ब्लेक कलर की।